पा रहे हैं यहां दुकान है जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह सब्जियों की दुकान है जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पटर कुंदरू--

पर एक ग्राउन्ड में थोड़ा सा जगह पे हरा घास है जैसा की हम देख पा रहे हैं ग्राउन्ड के सामने एक पेट्रोल पंप है जैसा की हम देख पा रहे हैं--

अलमीरा और भी बहुत तरह का फर्नीचर रखा हुआ है जैसा कि हम देख पा रहे है।

आ रहे है दोनों तीनों ट्रेंस के बीच बीच में कही साइकल भी लगा हुआ है जैसा कि हम दे--

जैसा कि हम देख पा रहे सामने एक बिल्डिंग है जो कि पीच कलर से पेंट किया हुआ हे जैसा कि हम देख पा रहे रोड के उस साइड भी कुछ बिल्डिंग्स है।

एक बिल्डिंग ब्लू कलर का है।

जैसे कि हम देख पा रहे हैं रूम में लकड़ी का एक--

पा रहे हैं मंदिर के पाहर कुछ सीढियां है जैसा कि हम देख पा रहे हैं मंदिर में कुछ लोग है जैसा कि हम देख पा रहे हैं मंदिर के अंदर बहुत अच्छी सजावट दिख रही है ।

जैसे कि हम देख पा रहे हैं उसके बाहर थोड़े बहुत सामान सजा कर रखा हुआ है जैसे कि --

जैसा की हम देख पा रहे हैं स्टील का जो छत है वो सारा रैक पे अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है।

जैसे कि हम देख पा रहे सामने नदी है जैसे कि हम देख पा रहे नदी के ऊपर --

जैसा कि हम देख पा रहे सामने एक रूम है जैसा कि हम दे--

रूम बहुत सुंदर लग रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं रूम में--

जैसा कि हम देख पा रहे एक लाल रंग का एक हरा रंग का और एक कलरफुल कलर का कुछ रखा हुआ--

पा रहे हैं एक रूम है जैसा कि हम देख पा रहे हैं रूम वाइट कलर का है जैसा कि हम देख पा रहे हैं रूम में --

के हाथ में बुक है किसी के हाथ में कॉपी है किसी के हाथ में पेन है देख --

बात है जैसा कि हम देख पा रहे हैं फूटपाथ के बगल में दीवार है जैसा कि हम देख--

दीवार में र तरह-तरह का चित्र बना हुआ है जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक जगह दूल्हा-दुल्हन फेरा ले रहा है।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं दूसरे दीवार में बारात जा रहा है तीसरे दीवार में दूल्‍हा-दुल्‍हन है चौथे दीवार में राधाकृष्‍ण है --

चारा बैडसीट बुलु कलर का है जैसा कि हम देख पा रहे हैं खिरकी में सारा पर्दा हरा और ब्‍हाईट कलर का है जैसा कि --

जैसा की हम देख पा रहे सामने एक घर है जैसा कि हम देख--

यह एक बिस्तर है जिस पे येलो कलर का बेडशीट बिछा हुआ है जैसा कि हम देख पा रहे हैं।

सीलिंग में लाइट्स लगा हुआ है जैसा हम देख पा रहे हैं सीलिंग व्हाइट कलर का है जिन --

एक गोलाप का फुल है जो की गुलाबी रंग का है जैसा की हम देख पा रहे एह पैर भी है।

जैसा की हम देख पा रहे हैं यहाँ बहुत सारा लोग हैं जैसा की हम देख पा --